ऊपर काफी सारी और कुछ कलर किया गया है दीवाले बनी हुई है काफी सारी यहाँ--

यहाँ पर कुछ बन रहा है और यहाँ पर रेती पड़ी है मिट्टी ईंटे पड़े हुए है पेड़-पौधे भी है और यहाँ पे लबियाए लगी हुई है उसी कलर की है।

और सब्जियां वगैरा भी यहाँ पे मिल रही है प्याज आलू वैगेरा लहसुन वगैरा भी यहाँ पे मिल रहा है और दाल वगैरा--